यहां पे हमें बहोत ऊची ऊची बिल्डिंग --

साथ में कुछ ईंटें दिख रही है और साथ में रेत दिखाई दे रही है और सीमेंट भी दिखाई दे रहा है।

हनुमान जी की मूर्ति दिख रही है जो की आशीर्वाद दे रहे हैं।

हमें यहां पे कुछ मिट्टी दिखाई दे रही हैं।

ए_टी_एम के बाहर कुछ हाथी दिखाई दे रहा है जोकि बाइक पे हैं।

और हमें यहां पे बहोत सारी टी_शर्ट भी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में हमें दिखाई दे रहा है ये किसी जेंट्स के कपड़ों की दुकान है यहां पे उनकी बहुत सारी जैकेट्स रखी हुई दिखाई दे रही हैं हमें यहां--

टी शर्ट्स भी दिख रही हैं कुछ हैंगर में लटके हुए कपड़े हैं यहां पे हमें कुछ बैग में कपड़े पड़े हुए दिख रही हैं।

जहां पे एंट्री गेट को बोहोत सुंदर सजाया गया हैं कुछ लाइटे दिख--

ऊपर हम एक वाटर कूलर रखा हुआ दिख रहा है उसके पास एक ग्लास भी दिख रहा है।